इस फोटो में एक सिटी बस स्टॉप है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ है।

इस रूम पे सोफा है टेबिल है खिड़कियां है ए_सी है।

इस फोटो में एक दुकान है दुकान के आगे तीन लोग बैठे हुए हैं ब्रेंच है।

इस फोटो में बड़े बड़े बिल्डिंग्स है खिड़कियां है ग्लास है।

ये एक बर्तन का दुकान है जिसमें कई तरह के बर्तन है छोटे बड़े--

गाय है छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के छोटा सा बकेट है पीछे एक दीवार है।

ये एक रस्ते का फोटो है रस्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ है और एक तरफ बड़ासा बिल्डिंग हैं।

इस फोटो में कई सारे दुकान है इसमें से एक होटल हैदराबादी है।

होटल के अंदर कई सारे लाइट्स है ग्लास है सीढ़ियां है नीचे पार्किंग है लोग जा रहे है।

ये एक मॉल का फोटो है जिसमें कई सारे बर्तन है कढ़ाई है।

इस फोटो में कई सारे रैंक्स है। इसमें कई सारे सामान रखे हुए हैं। मेडिसिंस है।

इस फोटो में आगे दो बड़े बड़े ट्रक है ट्रक में टाटा लिखा गया है।

इस फोटो पे बाइक है स्कूटी है दरवाजे है लाइट है फैन है फोटो है।

इसमें पोस्टर में लिखा हुआ है होटल आयुष फैमिली रेस्टोरेंट --